इधर दीवार के अंदर की साइड कुछ पौधे लगे हुए है पौधों के पत्ते नीचे झड़े हुए हैं।

इस फोटो के अंदर यहां पर बहोत सारी हरियाली दिखाई दे रही है छोटी छोटी घास लगी हुई है छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

सामने कुछ रूम बने हुए है पंख लगे हुए हैं दरवाजे खिड़कीयां लगी हुई है ट्यूबलाइट लगे हुए लाइट वाले बोर्ड लगे हुए है।

इस फोटो के अंदर सामने समीक्षा बिल्डिंग मटेरियल जैसे भी लोडर टैंकर में व डंफर के लिए संपर्क किया जाता है।

और यहां पर सीमेंट ईंट ग्रिड जोधपुरी पट्टी भीलवाड़ा कंकर बालू रेत मोती पानी टैंकर यहां बंद है।

यहां इस फोटो के अंदर सामने सीधी सीधी सड़क जा रही है सड़क के ऊपर कुछ कचड़ा बिखरा हुआ है सड़क के --

इस म्यूजियम के ऊपर येलो कलर किया हुआ है इधर भी बहुत सारे बहुत गहरे गहरे पेड़ हैं।

दो दीवान के ऊपर बहोत सारे लोग बैठे हैं।

इस फोटो के अंदर सामने दुकान है दुकान के अंदर फर्नीचर लगे हुए है यहाँ तरह तरह के सामान मिलते हैं।